बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी है वो योग कर रही है एक ने ब्लैक कलर की जींस पेहेन रखी है।

बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हैं घास लगी है नीचे टाइल्स लगी हुई है एक गाड़ी और खड़ी है।

एक आदमी खड़ा है वह गैलरी को पकड़ के खड़ा है वह कुछ उधर देख रहा है एक वाइट कलर की बहोत बड़ी बिल्डिंग बनी है।

यहाँ ऊपर पत्रे लगे हुए है एक आदमी और खड़ा है बहुत सारे गाड़ियां खड़ी हैं नीचे दीवार बनी हुई है खिड़कियाँ लगी हैं।

दीवाल पे ब्लू कलर की पुती हुई है साइकिल खड़ी है बहुत सारे झाड़ लगे हैं बिल्डिंग बनी --

एक हाथी रखा हुआ है उसके ऊपर एक आदमी चढ़ा है वह डं उसके हाथ में एक डंडा है।

यह एक रेलवे स्टेशन है इसमें बहुत सारी पटरियाँ बनी हैं घास लगी हुई है।

उन्होंने साड़ी पहन रखी है एक जेंट्स खड़े हैं एक बहोत बड़ी बिल्डिंग बनी है वाइट कलर की उसमें ब्लू कलर के काँच लगे हैं।

एक ब्रिज बना हुआ है उसमें बहुत सारे तार लगे हुए हैं लाइट का खंभा लगा हुआ है एक चंद्रमा दिख रहा है।

वाउ उजाला हो रहा है बहुत सारे तार लगे हुए हैं बादल छाए हुए हैं ।

ये एक जिम है यहाँ पर जिम का समान रखा हुआ है नीचे रेड कलर के कालीन बचा हुआ है।

एक सोफा रखा हुआ है वह रेड कलर का पोता हुआ है नीचे हरी-हरी घास लगी हुई है सामने एक --

बहुत सारे फुवारें लगे हुए हैं बहुत सारा पानी भरा हुआ हे।

यहां एक टेबल रखी है उसे पर एक अंकल बैठे हैं कंप्यूटर रखा हे वह कुछ बोल रहे हैं सामने दो लेडिस ए --

जेंट्स चेयर पर बैठे है | टेलीफोन रखा है | एक टेबल रखी है | पीछे एक लेडिज बैठी है | बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है | फोटो लगे है ।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

बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं फ्लावर रखे हुए हैं पत्तियाँ रखी है हरी हरी |

यह एक दुकान बनी हुई है बहोत सारा कटाला पड़ा है नीचे ग्रीन कलर की कालीन बिछी हुई है।

बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है इसमें बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं खम्बे लगे हुए हैं।

बिल्डिंग बनी हुई है वह वाइट कलर की पुति है | बहुत सारे झूले लगे हैं बहुत सारी घास लगी है | सड़क जा रही है | मंदिर बना हुआ है |

एक कच्चा कवेलू का घर बना हुआ है बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं एक खम्बा लगा हुआ है एक मूर्ति रखी हुई है।

बहुत सारे बलून लगे हुए है ब्लैक कलर के रेड कलर के बहुत सारी चेयर रखी हुई है टेबल रखी हुई है।

एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर रखा हुआ है एक खंभा लगा हुआ है बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है।

एक दीवार है रेड कलर की पुत्ती हुई है | बहुत सारी लाइटिंग लगी है | एक गाड़ी पे बैलून लगे हुए हैं टेबले लगी है कुर्सियां लगी है ।

बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं यह एक मॉल है बहुत सारी जैकेट ऑन लगी हुई है जींस रखी हुई है वाइट कलर की दिवाले है।

दो-तीन अंकल खड़े हुए हैं एक लड़का सेल्फी ले रहा है बहुत सारे ऊप्पर झूमर लगे हुए हैं पिंक कलर का यह मकान --

एक कार लाग खड़ी हुई है बहुत सारी टू व्हीलर खड़ी हुई हैं एक आदमी फोन पर बात कर रहा है एक पत्रिका पोस्टर लगा हुआ है।